ये एक एक ऊँचा सा बिल्डिंग दिख रहा है अगल-बगल में पेड़-पौधा दिख रहे है।

कंबल टाइप निकल रहा--

यहाँ एक स्वागत समारोह चल रहा है अच्छी बिल्डिंग भी दिख रहा है बहोत से लोग बैठे है दो आदमी जो खड़े है स्वागत के लिए और--